टीचर है जो की उनके बीच में पीछे की ओर खड़ी हुई है।

और कुछ वायर्स नीचे भी गिरे हुए है।

के बाहर बैंक का भी शटर डाउन है।

की घेरा बनाकर बैठे हुए है।

गाड़ी है गाड़ी के टायर्स वगेरह खुले हुए हैं।

डाकखाने के बाहार की फोटो है।

डोसा रखा हुआ है नारियल के पत्ते के ऊपर।

काफी पुलिस बाहर की ओर खड़ी है।

और सेंटर मे एक टेबल है साइड --

रिक्शे के ऊपर आगे धूल के ऊपर किसी ने कोई नंबर लिख रखा है।

एच.डी.एफ.सी. बैंक के बाहर की फोटो है।

नीचे से जींस एंड शूज वियर कर रखे --

ग्रीन कलर की बाउंड्री जिसमें हाईलाइट --

अपने-आप को बैलेंस कर रहे है।

आई.टी.आई दरभंगा लिखा हुआ है और काफी पुरानी-पुरानी मशीन --

यहाँ से एक ऑटो रिक्शा बाहर से होके जा रहा है।

और पीछे सूरज निकला हुआ है और अपने घर के छत के आंगन पे एक --

पीछे की ओर बहुत से कपड़े हैं जो की तह करके रखे है।

इलेक्ट्रिकल भी रखे हुए हैं और ये एक शॉप है जिसके ऊपर भी न्यूज़पेपर लगे हुए हैं |